श्री गौतम बुद्ध जी की विशाल मूर्ति जो द्रीर्घनिद्रा आसान में बैठे हुए है। अगल-बगल कुछ पेड़-पौधे है। आस-पास कुछ व्यक्ति आते-जाते दिखाई दे रहे है।

मंदिर में एक नुकीला गुंबद लगा हुआ है मंदिर के किनारे कुछ पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

बस में इलेक्ट्रिक बस लिखा हुआ है। बस के आस-पास कुछ पेड़-पौधे हैं।